इस चित्र में हम एक ब्रिज के नीचे की फोटो देख रहे हैं।

ऊपर हमें साफ-साफ ब्रिज दिख रहा है ब्रिज के ऊपर हमें हरे-हरे पेड़-पौधे दिख रहे हैं ब्रिज में रेलिंग भी दिख रही है जो नीले कलर से दिख रही है।

नीचे पास तीन आदमी भी खड़े हुए हैं एक शूटर पहने हुए जेब में हाथ डाल के एक गले में मफलर डालकर हाथ डाले हुए खड़ा हुआ है वह बैग रखा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर पानी टंकी दिख रही है किनारे किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं फर्स में थोड़ा-थोड़ा घास--

इस चित्र में हम एक ग्राउंड देख रहे हैं ग्राउंड में बहुत ज्यादा हरी हरी घासे दिख रही है।

किनारे एक इलेक्ट्रिक की पावर लाइन दिख रही है जिसमें तार भी लगे हुए है।

मिरर में दुकान की अपॉजिट आकृति भी दिख रही है।

कुछ लाइट की आकृति दिख रही है स्टैंड की आकृति दिख रही है।

कुछ कांच के स्टैंड रखे हुए हैं उसकी भी आकृति दिख रही है।

एक नहीं पांच से छह प्रकार के लाल बॉक्स दिख रहे है ।

एक कुर्सी भीं दिख रहीं हैं एक आदमी और सफेद सर्ट पहने खड़ा हुवा हैं।

इस चित्र में हम एक दुकान देख रहे हैं बोर्ड में ऊपर पप्पू की दुकान लिखा है।

नीचे साइड एक दरवाजा लगा हुआ दरवाजे में गिलास लगी हुई है गिलास में परछाई पड़ रही है अंदर लाल कलर की कुर्सी दिख रही है।

दरवाजे के किनारे भवन दिख रहा है भवन के किनारे कुछ हरे-भरे पेड़-पौधे दिख रहे है।

एक सफेद कलर की गाड़ी भी दिख रही है जो बाहर खड़ी है।

राउंड पाइप भी दिख रहे हैं जो स्विमिंग पूल में लगे हुए हैं किनारे से ढरे भरे पेड़-पौधे दिख रहे है।

इस चित्र में हम एक पार्किंग एरिया को देख रहे हैं पार्किंग एरिया बहुत बड़ा दिख रहा है एक कॉलम भी दिख रहा है कॉलम में नीले कलर का पेंट हुआ है ऊपर की सीलिंग सफेद दिख रही है।

इस चित्र में हम एक बुक स्टोर को देख रहे हैं दोनों तरफ अलमारि यों में खांचे बने हुए हैं खांचों में बुकें रखी हुई हैं सामने साइड भी बहुत बड़ी अलमारी दिख रही है।

एक ने जींस और चप्पल पहनी हुई है एक ने सफेद कलर का शर्ट पहना और काली जींस पहनी हुई है।

इस चित्र में हम एक हरी भरी घास का जगह देख रहे हैं घास के बीच में एक पोखर बना हुआ है जिसे हम एक स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं।

किनारे साइड हरे भरे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं किनारे साइड एक जाली नुमा दीवार के ऊपर आकृति भी बनी हुई है जो चारों तरफ से बंधी हुई रही है।

कुछ बड़ी बोतलें दिख रही है कुछ सफेद दिख रही है कुछ छोटी दिख रही है एक का ढक्कन लाल दिख रहा है एक का नीला दिख रहा है।

कुछ पूरी सफेद दिख रही है उसके बगल में एक सफेद कलर का हीटर रखा हुआ है जो सब मेज मे के ऊपर रखा हुआ--

इस चित्र में हम एक हाथ से चलाने वाले ठेले गाड़ी को देख रहे हैं जिसके चार पहिये दिख रहे हैं।

उसके बगल में बैठा आदमी एक सेफ्टी जैकेट पहना हुआ है सिर में टोपी लगाया हुआ है।

साइड में एक कार दिख रही है कार के नंबर प्लेट दिख रही --

जिसमे हमें रेडिटर भी दिख रहा है वाइजर भी दिख रहा है पेट्रोल फैन भी दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक भवन को देख रहे है भवन के अंदर शायद बहोत लाइट दिख रही है किनारे किनारे शायद परछाई भी पड़ रही है जो काली काली दिख रही है।

इस चित्र में हम बहुत सारे खिलौने देख रहे हैं जो गेम जैसे दिख रहे हैं कुछ बच्चों के लिए अच्छे दिख रहे हैं सामने एक डिस्प्ले दिख रहा है।

कुछ जगह में एक साथ एक के ऊपर एक बहुत सारे लकड़ी के पटरे रखे हुएहै।

किनारे साइड दीवार भी दिख रही है फर्श भी दिख रही है फर्श सफेद कलर की है।

जमीन में बहोत सारी हरी भरी घासें दिख रही है किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

किनारे साइड एक इमारत दिख रही है जो बहु मंजिला इमारत है।

मल्टीकलर का आसमान देख रहे हैं चारों साइड छोटे-छोटे घर दिख रहे हैं किनारे साइड बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे है।

इस चित्र में हमें एक भवन के किनारे खाली हुई ग्राउंड दिख रही हैं इस ग्राउंड में कुछ जगह हरी-हरी घासें दिख रहे हैं।

कम वाइल्ड का चित्र देख रहे हैं मेन गेट में कम वाइल्ड लिखा हुआ है।

दुकान के बाहर एक आदमी भी खड़ा हुआ है आदमी सफेद कलर की--

यह तीन रो में दिख रही है कुछ मल्टीकलर में दिख रही है कुछ सफेद कलर में दिख रही है।

एक खेत के किनारे तालाब को देख रहे हैं तालाब दो भागों में बंटा हुआ है बीच में कच्ची रोड दिख रही है।

उधर साइड भी पानी भरा है इधर साइड भी पानी भरा है।

रो तालाब में पानी में ऊपर की आकृति दिख रही है चारों साइड हरे भरे पेड़-पौधे दिख रहे है।

जो कई कलर में दिख रहे हैं कुछ फर वाले मैट दिख रहे हैं कुछ प्लेन मैट दिख रहे है।

इस चित्र में हम पानी के किनारे बने पावर प्लांट को देख रहे हैं किनारे-कनारे दो ठो ऊंचे ऊंचे सीमेंट के बोर्डर बने हुए है।

इस चित्र में हम एक बर्थडे पार्टी को देख रहे हैं एक बच्ची के द्वारा बर्थडे बनाया जा रहा है बीच में एक टेबल रखी हुई है।

टेबल में तीन कलर का केक रखा हुआ है ऊपर वन लिखा हुआ है।